और ये इमारत प गेट पर कालू और सफेद रंग करयू और इमारत पर एक कालू रंगकु गेट लगायूं।

और ये गाड़ी का पैथर हमे होटल दिखेण लग्युं और होटल पर सफ़ेद रंग करयूं।

यखह हमें फूलो की दुकान दिख्याणी और यूं दुकान पर छोटे-छोटे गमला राख्यां बड़ा गमला भी राख्यां।